इस tutorial में हम सीखेंगेःनए serial के लिए subscription कैसे जोड़ना है
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को library science का ज्ञान होना चाहिए
आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
और आपको koha admin access भी होना चाहिए यदि नहीं तो कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
पहले के tutorial में हमने सीखा था कि serial subscriptions कैसे catalog करना है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि serials के लिए नया subscription कैसे जोड़ना है
superlibrarian username bella और उसके password से login करें
जैसा कि इस श्रृंखला में पहले के tutorial में बताया गया है एक नया vendor for serials subscription बनाएं
मैं mumbai journal supplier name दूंगी फिर मैं एक mumbaijournals @gmail com email आईडी जोड़ूंगी
निम्न के लिए चैकबॉक्स check करना याद रखें
इन विवरणों का उपयोग बाद में इस tutorial में किया जाएगा
इसी तरह आपको अपने vendor का विवरण भरना होगा
यहाँ journal का screenshot है जिसे हमें सब्सक्राइब करना है
यहां दिखाए all सभी विवरण वे हैं जिन्हें मैं अपने koha interface में प्रविष्ट करूँगी
koha interface पर जाएँ
अब koha homepage पर serials पर click करें
खुलने वाले पेज पर new subscription पर click करें
यह एक और नया पेज खोलेगा जो दर्शाता है add a new subscription 1/2
यहां हमें कुछ विवरण भरने के लिए कहा जाएगा
vendor के लिए दो रिक्त boxes के निकट search for vendor टैब पर click करें
नए window में एक नया पेज serial subscription: search for vendor खुलता है
vendor name field में मैं mumbai journal supplier type करूंगी
आपको यहां अपने vendor का name type करना चाहिए अब इस field की दाईं ओर ok button पर click करें
vendor search results नामक एक नया पेज खुलता है
नीचे दिए गए table में select: में vendor name के निकट choose पर click करें
add a new subscription 1/2 पेज फिर से खुलता है इस पेज को बंद न करें क्योंकि इसे बाद में tutorial में उपयोग किया जाएगा
अगला record है record के नजदीक दो खाली boxes हैं
इन खाली boxes में दो टैब हैं:
यदि record पहले से मौजूद है तो search for record पर click करें
अन्यथा संबंधित serial के लिए एक नई प्रविष्टि बनाने के लिए create record टैब पर click करें
पहले के tutorial में हमने शीर्षक indian journal of microbiology के साथ serial सूचीबद्ध किया है
इसलिए हम search for record टैब पर click करेंगे
catalog search नामक नया window खुलता है
keyword field में indian प्रविष्ट करें
फिर पेज के नीचे search पर click करें
search results from 1 to 1 of 1 नामक नया पेज खुलता है
इसमें पहले प्रविष्ट किए गए विवरण हैं:
आपके द्वारा प्रविष्ट किए गए विवरण देखेंगे
फिर table के दाएँ कोने पर choose button पर click करें
वही window बंद हो जाती है और प्रविष्ट विवरण पेज पर दिखाई details हैं
add a new subscription 1/2
आपके द्वारा की गई प्रविष्टियों की संख्या के आधार पर यह आपके interface पर भिन्न हो सकता है
आगे बढ़ते हुए मैं निम्नलिखित को ऐसे ही छोड़ दूंगी
library के लिए मैं ड्रॉपडाउन से spoken tutorial library चुनूंगी
यदि आवश्यक हो तो आप निम्न भर सकते हो
मैं उन्हें खाली रखूंगी
अगला patron notification है ड्रॉपडाउन से routing list चुनें
grace period के लिए मैं 15 day s चुनुंगी
number of issues to display to staff में 4 प्रविष्ट करें
number of issues to display to the public में 4 प्रविष्ट करें
सभी विवरण प्रविष्ट करने के बाद पेज के नीचे next पर click करें
add a new subscription 2/2 नामक नया पेज खुलता है
serials planning section के लिए निम्न प्रविष्ट करें
first issue publication date में मैं 01/01/2017 प्रविष्ट करूंगी
frequency में मैं dropdown से ⅓ months i e quarterly चुनूँगी
यदि ड्रॉपडाउन से पहले से नहीं चुना गया है तो issues का चयन करें enter amount in numerals बॉक्स में 4 प्रविष्ट करें
subscription start date में 01/01/2017 प्रविष्ट करें
numbering pattern dropdown से volume number चुनें
locale drop down से english चुनें यदि english के अलावा आपकी भाषा कुछ ओर है तो आप dropdown से उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं
फिर volume और number के लिए निम्न प्रविष्ट करें
begins with: volume = 57
हालांकि यदि आप patterntype को बदलना चाहते हैं तो show/hide advanced pattern पर click करें
प्रविष्टियों को edit करने के लिए advanced prediction pattern table के नीचे modify pattern पर click करें
ध्यान दें कि pattern name volume number होना चाहिए
numbering formula vol {x} no {y} होना चाहिए
table advanced prediction pattern में koha default रूप से निम्न values का चयन करता है
begins with :
अब पेज में नीचे test prediction pattern पर click करें
prediction pattern उसी ही पेज पर दाईं तरफ दिखाई देगा
prediction pattern निम्न विवरण प्रदर्शित करेगा
अंत में पेज में नीचे save subscription पर click करें
निम्न विवरण के साथ subscription for indian journal of microbiology नामक नया पेज खुलता है
planning टैब पर click करें
निम्न को जाँचे
rollover टैब के लिए volume और number 99999 और 12 होना चाहिए
आगे issues टैब पर click करें
published date: 01/01/2017
इसी के साथ journal subscription सफलतापूर्वक जुड़ गया है
subscription of serials को जोड़ने का उद्देश्य निम्न track रखने के लिए है
serials
अब आप koha से लॉगआउट कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए koha interface के ऊपरी दाएँ कौने पर जाएँ spoken tutorial library पर click करें और dropdown से log out चुनें
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुंचते हैं
संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा
नियतकार्य के लिए journal of molecular biology के लिए नया subscription जोड़ें
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपने प्रश्नों को समय के साथ इस forum में post करें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
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद